इस दृश्य में बुक दुकान का चित्र है।

इसमें कृति योगा लिखा हुआ है और पेड़ पौधे भी लगे ह--

इस दृश्य में एक पार्क का चित्र है।

और सीढ़ी भी बना हुआ है।

और टेबल के ऊपर टिशू पेपर और कुछ कुछ सामान भी रखा हुआ है।

एयरपोर्ट के बाहर घास और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं और आसमान भी दिख रहा है।

इस दृश्य में एक जिम का चित्र है।

और एक आदमी हॉफ पैंट पहन कर जा रहा है।

इस जिम में बहुत सारे जिम करने वाला सामान लगा हुआ है।

और एक लड़का सैंडो गंजी पहनकर जिम कर रहा है।

और टेबल और चेयर लगे हुए हैं।

इसमें ऐक आइ_सी_आइ_सी_आइ बैंक भी है।

इसमें बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।